चित्र मे हरी घास पर एक काला कछुआ दिख रह है।

गोबी तरबूज एक गुलाबी बर्तन दिख रहा है अलमारियों मे गुलाबी रंग दिख रहा है।

जिनका रंग जामनी गुलाबी पीला सफ़ेद दिख रहा है एक लोहे का स्टूल दिख रहा है।

सुताई का काम करते दिखाई दे रहे है एक युवक लोहे के इस स्टूल पर बैठा दिख रहा है दरवाजे खिड़किया दिखाई दे रही है।

पिंजरे मे ए-इस चित्र मे एक पिंजरा दिख रहा है।